यह चित्र बहोत सुंदर लग रहा है।

यह चित्र एक गाड़ियों की दुकान का है।

इस दुकान पर सु मारुति सुजुकी नाम की सारी गाड़ियां उपलब्ध है।